गाड़ी है गाड़ी में खिड़की है खिड़की में पर्दा है एक बगल में पेड़ है बगल मे घर है बगल में टीना का बना हुआ है।

एक दूर से घर दिखा रहा है बिल्डिंग में काम हो रहा है बहुत आदमी हैं इधर पर खड़ा और एक घांस दिखाई जा रहा है।

यहाँ बोहोत सारा लड़का लड़की नाच कर रहा है।